सामने एक तस्वीर नजर आ रहा एक बड़ा सा ऑरेंज कलर का गेट है।

सामने एक तस्वीर नजर आ रही है जिसमें तीन लोग खड़े होके बात कर रहे हैं।

सामने एक तस्वीर नजर आ रही है जो व्यायाम शाला की है व्यायाम शाला में ढेर सारी लाइट जले हुए हैं ढेर सारे मशीने हैं।

आपको सहायता कर लीजिए इसको रिकार्ड करके जमा कर--

दुकान कौन सा है ये पता नहीं चल पा रहा भूख हमको भी लगा है पर अभी नाश्ते का टाइम नहीं है।